ये दो आदमी नाव पर चढ़कर इसका लुफ्त उठा रहे है।

ये एक बहुत ही प्यारा बगीचा लग रहा है।

बेचने वालो के चेहरे पर बहुत ही मुस्कान रहती है कि हमारी मच्छलियाँ बहुत जल्दी बिक रही है और मछलियां हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है मच्छलियों से दवाई भी बनती है मछलियों में प्रोटीन पाई जाती है जो मच्छली हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है।

नहीं आ रहा है लेकिन जो भी है जैसा भी है खुले ग्राउंड में आसमान के नीचे बैठने का मजा ही कुछ अलग होता है यहाँ पे बड़ी तादात में बड़ी जनसंख्या में औरतें बूढ़े बच्चे आ के यहाँ बैठ के एन्जॉय कर रहे हैं।

फेशिनेब्ले और डिजाइन दार साईकिलों की दुकान है |

प्रतीक्षालय है और यह बस स्टैंड है।